स्टेज बनत ह खुब सुंदर-सुंदर फुल लगावल जाता क दो-तीन गो लइका बाड़न सनकुर्शी बाटे लाल क खूब बढियाँ रंगल बा सब फर्श भइल बा केतना गजब लागता केतना सुंदर बाटे केतना बड़हन बा।

एगो बुलेरो बाटे लाल कलर का एगो उज्जर कलर का उज्जर -उज्जर बाटे दू पहिया बाटे ऊपर मेहरारू बइठल बिया एगो बैग लेके मर्दाना खड़ा बा सुंदर --

जो आप वापिस व ऑफिस नियर बाटें। एहिजा ए.सी लगावल बाटे पंखा बाटे दूगो कुर्सी चार गो कुर्सी बा मेज बा।

ये मंदिल बाटे खूब घेर का मर्दाना वाले चारों ओर से फूल से घिरलवा लोहे का एंगल लगावल बाटे खूब गेरूआ कलर से रंगल बा |